बहुत सारे फसल उगाए जा रहे हैं बहुत बड़ा फील्ड है इधर एक पेड़ है।

यहाँ पे एक शिशा है लगा है यहाँ पे एक टेबल रखा है।

कॉपी में प्रो फूल बनाते हैं।

यह एक बेड रूम है यहां पे एक बिस्तर बेड लगा है।

पंडाल के साइड अर हैं यहां पे बहुत सारे पेड़ हैं।